फोटो में एक सोसाइटी दिख रही है जहां कम बिल्डिंगे है एक पार्किंग एरिया भी बना हुआ है जहां काफी टू व्हीलर्स एण्ड फोर व्हीलर्स है काफी अच्छा लग रहा है बिल्डिंग्स भी रंग-बिरंगी है कुछ बिल्डिंग हरे कलर में है।

वो कुछ मंदिर जैसा लग रहा है एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक कलर का है उसके बगल में दो स्तंभ दिखाई दे रहें हैं जोकि मिट्टी के जोकि व्हाइट कलर के हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही सुनहरा दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे जोकि हरे कलर के हैं।

खेत में कुछ डंडा में डंडा उसके पास कुछ पीले कलर का कुछ लगा हुआ है।